ये एस.बी.आई. पूर्णिया शाखा मेन ब्रांच है जो बहुत बड़ी है।

पोधे से सजाया गया है नीचे कुछ पत्ते में फूल लगा कर के सजाए एक लड़का खड़ा होकर --

मैदान है मैदान में छोटे छोटे घास हैं | घास के चारों और एक बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं | सामने तीन आदमी --

यह जिम है जो बहुत बड़ी है इसमें बड़े-बड़े मशीन है और बहुत सारे लाइट लगा हुआ है हॉल बहुत-बड़ा है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।